यहां पे सामने कांच का शीशा लगा हुआ यहां पर ऊपर ढेर सारी लाइटे लगी हुई हैं।

यहां पे बगल में एक डेस्क रखा हुआ है उसपे कुछ किताबें और सामान है।

यहां पीले कलर की अं पिलर बनी हुई है।